दीवार में शीशा भी लगाया हुआ है।

ऊपर में बहोत सारे लाइट और टी_वी लगाया हुआ है काले रंग का दरवाजा है।

इस तस्वीर में एक हॉल दिख रहा है।

और बाहर में भी बहुत सारे पोस्टर लगाया हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है।

ब्लैक पोल भी लगाया हुआ है और बड़े बड़े पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है ऊपर आसमान भी है।

बड़ा सा एक नोटिस बोर्ड भी लगाया है।

बहोत सारे लोहा भी है।

ऊपर में ग्रीन कलर का प्लास्टिक लगाया हुआ है।

बगल में घर भी है नीचे एक कार्टून भी रखा हुआ है।

नीचे में बहुत सारे पेड़ भी रखा हुआ है कट चुका वाला।

उसमें एक बड़ा सा बिस्तर रखा हुआ है।